आदमी बैठे हुए हैं जिसमें से एक आदमी ने डे कमीज डाल रखी है और एक आदमी ने चश्मा लगा रखा है।

ये एक हॉल है हॉल में काफी गमले रखे हुए हैं गमलो पर सफेद रंग का पेंट हो रहा है।

और इसमें पेड़ पौधे खड़े हैं यहां पे दो लेडीज योगा करती नज़र आ रही है जो एक लेटी हुई है और एक बैठी हुई है।

और यहां पे एक ऐ_सी लगा हुआ है मेज के ऊपर काउंटर है काउंटर --

ये एक होटल टाइप है यहां पे तीन काफी मेज लगी हुई हैं कुर्सियां रखी हुई हैं और छत के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

पास पहाड़ है पहाड़ नदी के बीच में पत्थर पड़ा हुआ है जहां पे लिखा हुआ खतरा--

सूरज की रोशनी पानी के अंदर भी दिखाई दे रही है और आस पास पहाड़ भी नजर आ रहे है और पेड़ पौधे भी नजर आ--

पानी काफी ऊंचाई पर है और एक यहां पे--

पटरी सी बनी हुई है और इधर पटरी के पास स्टील की ग्रिल नजर आ रही है और इधर--

पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और दो खंबे और नजर आ रहे हैं लाइटे नजर आ रही--

ये एक पार्क है बहुत बड़ा जू बोलते हैं उसको बहुत सारे गहरे गहरे तरह तरह के पेड़ हैं।

एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को देख रहे हैं उसके हाथ में कुछ औजार वगैरह आंखों पे स्पेक्स लगे हुए हैं।

जो एक अ कंप्यूट वो लैपटॉप वगैरा मेज के ऊपर रखा हुआ एक घर है जिसमें एग्जास्ट फैन वगैरा लगी हुई है वो

एक रोड है रेत वगैरा के टीले हैं और बहुत सारे पेड़ है वगैरा है दो रस्सी वगैरा टंग री है।

काफी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ खड़े हैं और कुछ बैठे हैं।

यहां पे दो लोग गाड़ी को वॉश कर रहे हैं यहां दो गाड़ी खड़ी है एक आदमी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है गाड़ी को ठीक कर रहा है।